फिर वहां पे ट्री दिख रहा है स्काई दिख रहा है वहां पे रोड पे लाइट का--

सब पे अलग-अलग चदर लगाई हुई है एक पिंक कलर का है एक ब्राउन कलर का है एक व्हाईट कलर का है वहा पे कपबर्ड्स है।

ब्लू कलर है एक फैन है फैन ब्राउन कलर का है दीवार क्रीम कलर की है वहां पे खिड़की में से एक बिल्डिंग --

ये एक ऑफिस है वहां पे दो माले की बिल्डिंग है वहां पे सारे--

पोर्ट है ब्लैक कलर के पोर्ट है वहां पे ग्रीन कलर का मैट लगाया हुआ है वहां पे ट्री है।